पास में ही और एक मकान दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी पैकिंग करने के लिए पन्नी दिखाई दे रही है।

यह एक गर्डन दिखाई दे रहा है।

एक बडा ओल दिखाई दे रहा है।